यह एक म्यूजियम की फोटो है| यहाँ पे प्राचीन-प्राचीन पत्थरों की मूर्ति रखी हुई है।

पर ए.सी. लगा हुआ है| पूरी दीवार सफ़ेद कलर में है| यहाँ कुछ लोग हैं जो उन चीजों को देख रहे हैं| ऊपर बहुत सारी लाइटे लगी हुई हैं।

यह एक ग्राउंड की फोटो है| यहाँ पर बहुत सारे पत्थर लगाए गए हैं बैठने के लिए गांव में छोटी-छोटी घास है जहां लोग बैठ सकते हैं| उसके साइड में आजू-बाजू पेड़ बड़े-बड़े पेड़-पौधे हरे-भरे पेड़-पौधे लगाए गए हैं।

ये है एक बिल्डिंग की तस्वीर है यहाँ बोहोत सारे घर हैं कुछ घरों में ए.सी. लगा हुआ है अ कुछ के कुछ घरों के बाहर कपड़े सुख रहे हैं अम नीचे एक कार खड़ी हुई है।

दोनों साइड में लाइटे लगाई गई हैं।

यह एक ग्राउंड है| यहां बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं बैठने के लिए| पत्थरों के साइड में छोटी-छोटी घास उग रही है| एक बहुत बड़ा गार्डन है जहां लोग बैठ सकते हैं।

गार्डन में कहीं-कहीं पर बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और कुछ लोग यहां पर घूम रहे हैं।

पत्थर की दीवार में एक गेट टाइप का है अंदर जाने के लिए उसके साइड --

ये एक मंदिर की तस्वीर है| यहाँ दो मूर्तियां बैठी हुई है जिन्हें अ सफेद और पीले कलर के कपड़े पहनाए हुए हैं उनके सामने मालाएं भी रखी हुई हैं।

स्कूल के सामने कुछ बड़े-बड़े हरे-भरे पेड़-पौधे हैं| कुछ छोटे-छोटे पेड़-पौधों के लिए लकड़ी स से उन्हें सुरक्षित किया गया है।

इस बिल्डिंग पे एक लंबा सा खंबा है जिसके ऊपर कुछ लगा हुआ है| इस बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां दी गई है।